बोहत ज्ञात है ये आंटी बहोत ले रहीं हैं और ये आंटी बेच रहीं हैं अंकल ये देख रहे हैं छु के कैसी हैं ये बहोत अच्छी लग रहीं हैं हमे।